इसमें बाहर बहोत सारी स्कूटियां खड़ी हुई नज़र आ रही है और इन स्कूटियां के नीचे मैट बिछी हुई नज़र आ रही है।

और पीछे शो रूम के अंदर भी बहुत सारी स्कूटियां खड़ी हुई नज़र आ रही है।

और यह जमीन से लगभग दो ढाई फुट की ऊंचाई पर बनाया गया है।

और इसके बाहर नीचे ग्राउंड में कई सारी कुर्सियां भी लगी हुई नजर आ रही है जो रंग बिरंगी है।

यह फोटो एक स्टेशनरी की दुकान की नजर आ रही है।

यह फोटो एके शोरूम की नजर आ रही है जो रॉयल एनफील्ड --

और बाहर एक बहुत बड़ा शीशे का गेट लगा हुआ है।

और एक पेड़ भी लगा हुआ नजर आ रहा है और इस तालाब का पानी लगता है कई दिनों से यहां पर जमा हो रखा है।

ये के साइडे दूब लगी हुई है और दीवार के पास में फूलों के --

यह फोटू किसी दुकान की नजर आ रहीं हैं जो लगता है इलेक्ट्रॉनिक समान से संबंधित हैं।

जिसमे एक साइड सर्विस सेंटर है और दूसरी साइडे गाड़ियां धोई जाती हैं।

और इसमें तीन बड़े बड़े शटर लगे हुए हैं जिसमें से एक शटर बंद है दो खुले हुए हैं।

और दीवार पर दो बड़ी बड़ी टी_वी भी लगी हुई है और दो सी_सी_टी_वी भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

जिसमें एक बच्चों द्वारा एक पोस्टर बनाया गया है जिस पर नाम लिखा हुआ है पतंजलि टेस्टी नमकीन ढाबा।

यह फोटो एक स्टेशनरी की दुकान की दिखाई गई है जिसके छत के ऊपर एक पंखा लगा हुआ है।